इन्हे बस अड्डा ही कहा जाता है आस-पास ढेर सारे बस ---

यूको बैंक है कोई बैंक साफ़ तो दिख नहीं रहा है तो समझ में नहीं आ रहा भैया यूको ही लग रहा है मुझे तो।